लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे एक डॉगी खड़ा हुआ है डॉगी है बहोत अच्छा डॉगी है वहाँ पे पेड़-पौधा सब चीज़ नजर आ रहा है बहोत सारा पेड़-पौधा नजर आ रहा है बहोत बढ़िया लग रहा है बहोत अच्छा लग रहा है बहोत भयंकर लग रहा है मत पूछिए बहोत अच्छा लग रहा है देखने में बहोत सुन्दर लग रहा है।

देखने को मिलेगा यहाँ पे बच्चो का नजारा ये है बच्चो का नजारा क्या है ये बच्चो का नजारा यहाँ पे बच्चो क्या बना रहे है ड्राइंग कर रहे है यहाँ पे टीचर खड़ी है।

ये है न यहाँ पे फराम है इतना अच्छा है मत पूछिए बहोत बढ़िया बहोत भयंकर है देखने में बोहत बढ़िया लग रहा है ये दोनों तरफ से दोनों साइड एकदम बहोत सारा मुर्गी रखा हुआ है इसमें।

कुछ भी बड़ा सा ये कुछ न कुछ तो है ही नजर हमको आया बहोत बढ़िया लग रहा है देखने में इतना अच्छा गेट वटे है मत पूछिए बहोत सुन्दर लग रहा है।